मतलब कि इस पिक्चर में ब्लैक एंड व्हाइट भी है और कलर्स भी है।

ये तस्वीर मे एक आई_सी_आई_सी_आई बैंक का ए_टी_ एम है जो की स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के ऊपर है ये के बिल्डिंग मे है सुबह का समय हो रहा है।

इस तस्वीर मे गौतम बुद्ध जी की एक बड़ी मूर्ति नजर आ रही है।

इस तस्वीर में गौतम बुद्ध जी की मूर्ति दिखाई दे रही है जो की गोल्डन कलर लखा दिखाई दे रही है काफी सारे फूल भी दिखाई दे रहे है इस तस्वीर मे।